यहाँ पे एक घड़ी दिख रही जो की सफ़ेद और गोल्डन कलर की है ऊपर से लाइट दिख रही है सफ़ेद कलर की यहाँ पे--

वो है बोर्ड यहाँ पर शिखर कटपीस भी लिखा हुआ है यहाँ पे एक भईया भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा लाल क्लर का उसपे ऐर्टेल पेमेंट बैंक लिखा हुआ है सफ़ेद कलर में बाइक दिख रही है।

बट बादल सफ़ेद कलर का दिख रहा है यहां पर महिलयां दिख रही है जो की साड़ी में खड़ी है किसी ने गुलाबी पहन रा किसी ने ब्लू